उन्होंने अलग अलग कलर की योगा मैट बिछाई है जैसे ब्लैक पिंक व्हाइट रेड --

इतो दुकाने दिख रही है यहां पे एक बर्ड मारा है दिखते ऊपर मानसरोवर स्टेशनरी ऐसा लिखा हुआ है।